इस तस्वीर में बहोत सारी मछलियां दिख रही है।

जिसका रंग काला है एक आदमी नीले रंग की कुर्सी पर बैठा है।

ये दृश्य एक खेल का मैदान का है।

घर के गेट के सामने दो काले रंग की चप्पल भी रखी हुई है।

मूर्तियों के आसपास बहुत सारे फूल के टॉप भी रखे हैं ।

नीचे फोर्स का रंग सदा है ऊपर बहुत सारे लाइट लगी हुई है एक ए_सी है।

ऊपर में बहुत सारे लाइट जले हुवे हैं।

यहां पर बहोत सारी ड्राई फ्रूट्स और फल रखे हुए हैं।

ये दृश्य एक मार्केट का है जहां पर बहुत सारे फलों के दुकान दिख रहे हैं ।

इस दृश्य में बहोत सारे साइकिल दिख रहे हैं।

सैलून के बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

सैलून का रंग पीला है।

सामने बहुत सारे मोटरसाइकिल भी है।

इस पर बहोत सारे किताबें लैपटॉप और जेरॉक्स मशीन रखी हुई है।

नीचे घास का रंग हरा है।

जिनका का रंग लाल पीला हरा नीला काला है।